और अम दही घी पनीर रसगुला गुलाबजामुन लिखा हुआ है और एक दुकान दिख रही हैं लकड़ी का काउंटर रखा हुआ है दुकान अंदर दो लोग खड़े दिखाई दे रहे है दुकान के बाहर कुछ-- .

टेबल रखा है टेबल पर कुछ अम कुछ अम बर्नियाँ रखी है जिसमें टोफियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है एक--

और लोहे की जाली लगी है उसपर लाल कलर पोता हुआ है भवन के सामने एक पीली कलर की बड़ी -सी बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है भवन के सामने एक सड़क बनी दिखाई दे रही हैं। .

की अ अम वो शेड लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ --

में एक मैदान दिखाई दे रहा हैं मैदान में कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ फूलो के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ खम्बे लगे हुए दिख रहे हैं।

गोल चबूतरा बना है ए को क्यारी बनी है गोल आकार में जिसमे मिटटी मीट --

कुछ छोटे -छोटे पेड़ लगे दिखाई दे रहे है कुछ बड़े- बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है एक लोहे का खम्बा --

जिम में खिड़की बनी हुई दिखाई दे रही है और जिम और जिम में दीवार पर सफ़ेद कलर पुता हैं।

में एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमे पानी भरा है तालाब में कुछ - कुछ जगह पानी भरा है कुछ- कुछ जगह सुखा मैदान --